यहां हम देख सकते हैं कि सोलह सत्रह गुलाब है।

और फोटो क्लिक करवाने के पोज में है।

कई सारे बिल्डिंग्स हैं हरे रंग का एक पेड़ दिख रहा है हमें कुछ बिल्डिंग सफेद रंग की हैं।

और तीनों ने अलग अलग रंग के कपड़े पेहने हुए हैं।

यहां दीवाल के ऊपर हम देख सकते हैं कि एक बोर्ड लगा हुआ है।

और कुछ जो लोग हैं वो खेतीबारी कर रहे हैं।

ये क्लब है जहां कई सारे कुर्सी लगे हुए हैं और एक टेबल है। टेबल के पास एक चेयर भी है।

जहां रेड रिबन से घेर दिया गया है।

यहां दो आदमी अ कुछ काम कर रहे--

ये एक लड़का है जो ब्लूतूथ लगा के बैठा हुआ है जिसके सर पे अ तिलक लगा हुआ है।

पीछे बैकग्राउंड में अह आपका येलो व्हाइट में पर्दा लगा हुआ है।

यहां एक स्टेज शो चल रहा है जहां एक गायक और गायिका हैं जिनके हाथ में माइक है।

कुछ पेड़ है पत्थर भी है।

यहां हम देख सकते हैं कि यह--

नमे से जैसे पानी बह रहा है और जो इसका नेचर है पूरा हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ।

यहां कई तरीके की जो दवाइयां है उसे सेट किया गया है अलग अलग रैक्स पे।

उसके पीछे एक बिल्डिंग भी है जिसके पास एक--

कई सारे पेंट्स के डब्बे भी हैं एक पेंट चार्ट भी है।

स्कूल का एक जो सिंबल होता है वो भी दीवार पे बनाया गया है।